बहुत बड़ा पर्दा लगा है कुर्सियां दिख रही।

बिजली का टावर दिख रहा है।

पीछे पानी की टंकी बनी हुई है नीला आकाश दिख रहा--

शादी का घर लग रहा है --

दिख रहा है।

रेस्टोरेंट दिख रहा है गाड़ियां चलती दिख रही है बहोत सारे ये--

इस चित्र में एक--

इस चित्र में तालाब दिख रहा है।

दिख रहा है लाइट जल रही है।

एक पंखा तीन पंखे लगे हुए हैं।

एक होटल दिख --

लाइटें लगी हुई --

एक व्यक्ति बाहर खड़ा है ऑरेंज रंग का--

इस चित्र में एक कन्या दिख रही है डांस करती हुई।